सामने एक बड़ी सी दुकान नज़र आ रही है वहां पे कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं कुछ लाइटें लगी हुई हैं कुछ टेबल पड़े हुए हैं।

सामने मे मकान नजर आ रहा है मकान के बाद दो मूर्तिया नजर आ रही है मूर्तियों पे व्हाइट कलर किया हुआ है गोल्डन कलर किया है ।

सामने में पिलर नज़र आरहा है उसके ऊपर मेहरून कलर किया हुआ है।

टाइल नज़र आरही है ब्लू कलर की है छत रेड कलर की।

सामने मे एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग तीन चार मंजिली नजर आ रही है इसपे बड़ा सा गेट लगा हुआ है वो गेट सफेद रंग का है लोहे का है।

सामने में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं पेड़ बहोत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं सामने पानी की टंकी नजर आ रही है।

सामने मे एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है वहाँ पे कुछ टेबल रखी हुई है बाहर मे रोड नजर आ रहा है टेबल का रंग ब्राउन है कुछ कुर्सियाँ रखी हुई है।

सामने में एक पहाड़ नजर आ रहा हैं इस पहाड़ी में माता रानी का मंदिर नजर आ रहा हैं यहाँ पे फूलो से सजा रखा हैं यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं।

सामने में कंस्ट्रक्शन का काम नजर आ रहा हे यहा पे सरिये खड़े किये गये हैं उनको बाधा गया हे।

रस्सी के सहारे में बड़े बड़े थम्ब बने हुए हैं मिस्त्री लोग मीटर लगा रहे हैं और लोग खड़े हुए इसको --

सामने में ऑफिस नजर आ रहे हे पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा हे यहा पे डाक घर --

उस सिल्वर के यहाँ पर जो फ्लोर पे जो टाइल लगी है ब्राउन कलर की है।

सभी ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं ग्रीन कलर के कपड़े पहने--

सामने में एक डेम नजर आ रहा हे डेम में बड़ा पानी के अन्दर उसमें मट्टी नजर आ रही हे।

उसमे लोहे की पाइपे लगी हुई है मशीन लगी हुई है जिसको घुमाया जाता है--

सामने एक रोड नज़र आरहा है रोड पे कुछ लोग नृत्य कर रहे है ये ड्रम --

आए हुए है इन्होंने सर पे कुछ घास वास उठा रखा है गले मे बड़े बड़े ढोल पहन के रखे हुए है इनको बजाते जा रहे है।

कुछ फ्लोर पे वाइट कलर के पौधा का गमला रखा हुआ है।

सामने मे एक शॉप नजर आ रही है ये शॉप खाने पीने की है यहाँ पे कुछ बीयर की बोतल नजर आ रही है एक ड्रम नजर आ रहा है ।

सामने में एक रोड नजर आ रहा है रोड के बाहर में एक गाड़ी नजर आ रही है गाड़ी में लिखा हुआ है बाहर बैनर लगा हुआ है।

सामने मे एक शॉप नजर आ रही है और उसमे बहुत सा सामान नजर आ रहा है यहाँ पे शैम्पू नजर आ रहे है ऑइल नजर आ रहे है।

पोडर नज़र आरहे है जूस नज़र आरहे है।

सामने में एक रोड नजर आ रहा हैं रोड के बीच में लाल कलर के इन्होने स्टोपर रखे हुई हैं यहाँ पर एक ट्रैक नजर आ रहा हैं पट्टी लागरी --

उसमें ब्लैक और व्हाईट यलो का कलर कॉम्बिनेशन किया साइड में गाड़ियाँ बहुत सी पार्क की हुई हैं।

नजर आ रहा है यहा पे सफ़ेद किया हुआ है यहा पर लोगो की भीड़ नजर आ रही है खिडकिया नजर आ रही है उरु--

अंदर हॉल नज़र आ रहा हैं यह पे सीढिया नजर आरी हे यह पे कुछ और भीड़ नजर आ--

सामने में एक दुकान नज़र आ रही है यहां पे बहुत समान रखा हुआ नज़र आ रहा है यहां पे शैंपू नज़र आ रहे हैं जूसेज नज़र आ रहे हैं।

लोशन नज़र आरहे है साबुन नज़र आरहे है।

सामने में एक किला नज़र आ रहा है किले के बाहर में एक झंडा नज़र आ रहा है झंडे पे हरा रंग ऑरेंज रंग --

सामने में एक दुकान नज़र आ रही है दुकान के बाहर में फ्लोर लगा हुआ है फ्लोर मैट लगी हुई हैं यहाँ पे।

सामने में एक किला नजर आ रहा है उसके बाहर में पार्किंग नजर आ रही है पार्किंग में बाइक खड़ी है स्कूटी खड़ी है बहुत सी बाइकें एक लाइन में खड़ी हैं।

इसके साइड में थोड़े गार्डन बना हुआ हैं गार्डन में छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं सामने बिल्डिंग तीन चार मंजिली हैं।

वहाँं पिल्लर का रंग सफेद है वहाँं पे लोहे की चादर पड़ी हुई है लोहे के गार्डर नजर आ रहे है लोग लाइन लगा के पूजा में खड़े हुए है यहाँ पर तुलसी का पौधा नजर आ रहा --

सामने मे कुछ बच्चे बैठे हुए है जमीन पे ये स्कूल के बच्चे नजर आ रहे है यहाँ कुछ बच्चे खड़े हुए है इन्होंने सर्दी के कपड़े पहन रखे है ।

हाथो में चूड़ी पहन रखी हे सामने में बहोत बड़े पेड़ पोधे नज़र आ रहे हैं।

सामने में क्रॉप नजर आ रहा हैं रोड में नजर आरहा हैं थोड़ी घास लगी हुई हैं यहाँ पे थोड़े तो मंजरी में खान नजर आ रहे हैं यहाँ पे--

सामने में एक गाड़ी नज़र आ रही है गाड़ी में नज़र आ रहे हैं कुछ लोग इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं।

सुखी हुई घास है कुछ हरी हुई घास नज़र आरही है।

और हत खुला मैदान नज़र आरहा है मैदान में बहोत सारी घास लगी हुई है ।

और कुछ लोग खड़े हुए इंतेज़ार कर रहे है।

सामने में एक बहोत बड़ा स्कूल है स्कूल का नाम गयारा इंटरनैशनल स्कूल है यहां पे बड़ा गेट लगा हुआ है बाहर में पार्किंग है और कुछ खूंटी लगी हुई--

सामने में एक रोड नज़र आ रहा है रोड के सनाइड में में मंदिर नज़र आ रहा है मंदिर में सफ़ेद कलर की--

कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं जो यहां पे लोग दिखाई दे रहे--

उसपे ब्लू कलर दिख रहा है उसके ब्लू कलर की लाइट नज़र आरही है साइड में रोड बना हुआ है।